? यहाँ पर बोहोत सरे फ्रूट लगये हुए हैं ]

यहाँ पर पानी बहता हुआ जा रहा हैं ऊपर पत्थर दिख रहैं हैं हरा पर शेड मै छोट छोटे जाड दिख रहैं हैं। जो की--

सामने येहा बहुत सारे लोग कड़े हुवे है एक कंडक्टर कड़े हुवे है वह पे बहुत सारे लोग बस क अंधर चढ़रा है ऊपर एक नी वाइट कलर आसमान दिखरा है मे एक जाड दिखरा है जोक आसमान के ऊपर--